पैसा निकाल रहे है।

छोटा -छोटा पेड-़ पौधा हैं ।

और ढोलक में--

डबल रोटी है चपाती है खाने की वस्तु है।

यहाँ एक भाई साहब --

पीतामर से पेंट किया गया है।

जिसमे खिड़की है सीढि है।